यह एक खतरनाक औ है। यहां सोशल डिसे डिस्टेंस का ज़्यादा ध्यान दिया जाए।

जैसा की आप सभी लोग जानते हैं देखिये यहाँ जैसे कोई मेला लगा हो यहाँ इतनी भीड़ है मानो कोई यहाँ मंदिर हो सकत है या फिर मानिए यहाँ कोई एक --

हमारे महाकवियों का नाम भी लिखा हुआ है और यहां हमारे भारत को बलिदान देने वाले भी आदमी की फोटो लगी हुई है जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल भगत सिंह गांधी जी आदि।

देखिए या कोई रैली नहीं चल रही है यहां पर यह एक स्कूल है और यहां मैनेजर सीट भी लगी हुई है और यहां कॉरपोरेटर की सीट --

यह विद्यालय ज्ञान का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है लेकिन इस विद्यालय में साइकिल स्टैंड नही है।

ईसाईयों के लिए होता है और यह कितना सुन्दर और सुशोभित करने वाला मंत्र है। इसमें केवल गॉडफादर ही रहते हैं धन्य --

जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यह कितना सुंदर एवं सुशोभित करने वाला-वाली जगह है। यहां कुछ --

कितने सुंदर-सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। यह कोई घूमने का स्थाल है। हरे भरे जगहों से ये भरा हुआ है। ध --

रप पानी चल रहा है और वो पानी ऊपर चल रहा है। कितना गजब नजारा कितना सुंदर नजारा है। इसमें कई तरह के कार्टूंस भी बने होंगे।